काफी आकर्षक लग रहा है और इसका रंग रूप भी क्योंकि यह चेयर अक्सर शादी विवाह में प्रयोग किया जाता है जहां पर वर वधु को इस पर बैठाया जाता है और स्पेशल शादी के लिए ही ऐसा चेयर का प्रयोग किया जाता है जो की --

ये मंदिर का गेट काफी आकर्षक है जो की कारीगरी से बनाया गया है बहुत मेहनत और बहुत --

काफी भीड़ है लगता है किसी भगवान मूर्ति का विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं सभी लोग।

बच्चे पढ़ने आते हैं इंग्लिश मीडियम का विद्यालय है।